एक आदमी दूध के तीन पॅकेट्स लेकर जा रहा हैं।

ये औरतें घुंघट निकाल कर बैठी है।

ये औरतें पूजा कर रही हैं।

मुर्गियां पिंजरे में बंद की हुई हैं।

इन मुर्गियों का कलर व्हाइट हैं।

वह छत पर एक सीमेंट की टंकी बनी हुई है।

इसमें सामने काफी सीनरियां लगी हैं।

सॉस की बोतल एंड टिशू पेपर पड़े--

के खेलने के लिए काफी टैडी बियर --

काफी सारे खाते पड़े हैं।

ये ग्राउंड की तस्वीर हैं।

ये क्रेन की तस्वीर है। इसका कलर ऑरेंज है।

आदमी के पीछे बोर्ड पर--

उसके सामने पार्क में एक--

ये चर्च रोड़ा वाली में है।

एक टेबल पर काफी जूठे बर्तन पड़े हैं।

इस पेशेंट ने रेड कलर की कैप भी लगाई--

रहा है पीछे काफी सारे कॉटन --

ये सारे व्हाइट कलर कें हैं।